यह एक बड़ा सा मिरर है।

यह एक खाली मैदान है।

जहां पर बाहर में मार्बल और टाइल्स रखे हुए हैं।

यह एक फूलों की दुकान है।

और इस बाहर बोर्ड लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है।

बहोत से सामान रखे हुए हैं बगल में सीढ़ी है।

और तरह तरह के छोटे और बड़े हर तरह की मछलियां है।

यह दृश्य मछली विक्रेता स्थान का है जहां पर लोग लाइन से मछली को बेच रहे हैं।

यह दृश्य एक ब्रिज का है जहां पे--